यह पुस्तक की दूकान है। यहाँ पर अनेक प्रकार की दूकान मिलती है और यहाँ पर एक बालक किताब खरीद रहा है।

ये ये एक अस्पताल है इसमें चेयर पर एक पेशेंट दिखाई दे दे रहा है।

यह एक शौपिंग मॉल दिखाई दे रहा है।

उसमें पेट्रोल और डीजल मिलता है।

कुछ लोग पेट्रोल भरा रहे हैं यहाँ पर कुछ बाइकें खड़ी हैं।

पुल को देख रहा है | यहाँ पर एक साईकल खड़ी है | हाईवे एक लोग बाइक से जा रहे हैं चला रहे हैं दिखाई दे रहे हैं।

जो लग रहा है गैरेज पर खड़ी है खराब कार है। बहोत सारी गाड़ी का गेट खुला हुआ है। एक व्यक्ति भी गेट खोल रहा है दिखाई दे रहा है।

हरी सब्जी उपलब्द है | दुकान पर एक व्यक्ति बेच रहा है | मिर्च खरीद रहा है |